हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते है शहर है बहुत ही खूबसरत नजर के साथ ये शहर दिख रहा है और आप भी आ सकते है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे दिखते हुए बहुत ही शानदार यहाँ पर दिख रहा है और आप भी आ सकते है यहाँ पर घुमने टहलने के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़र के साथ यहाँ पे दिख रहा है।

हेलो गाइस यहाँ पर देख सकते है लोग बच्चे यहाँ पे पेंटिंग बनाया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत नजारा के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है और आप भी आ सकते है यहाँ पर बनाने के लिए--